और अ नीचे प्याज़ रखा हुआ है अ अ काट कर चमचे रखा हुआ है अ।

यह विसाखा डायरी पार्लर का पिक्चर्स है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति भी सामने खड़ा है।

यह फील्ड का पिक्चर्स है जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और कुछ--